पीछे की तरफ दीवाल दिखाई दे रही है जो सिंदूरी कलर की दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो की ऊपर लोग चढ़े हुए हैं जो काम करते हुए दिखाई दे रहे --

इस फोटो में दुकान के फोटो को दर्शाया गया है दुकान एक शटर में दिखाई दे रही है यहां पर वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक नेशनल पार्क दिखाया जा रहा है जो काफी बड़ा दिखाया जा रहा है जिसपे एक बाउंड्री दिखाई जा रही है जो व्हाइट कलर की दिखाई जा रही है।

येलो कलर का दिखाई दे रहा है सामने कुछ गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है और कुछ साइकिल दिखाई दे रही है पास में ऑटो दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग दिखाई दे --

यह एक होटल की फोटो दिखाई दे रही है जहाँ पर बाहर की तरफ दुकान दिखाई दे रही है इसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आस-पास खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है चबूतरा दिखाई दे रहा है।